वहां पे लेडिस भी वहां दिखाई दे रहे हैं।

दो लड़के सोफे पे बैठे दिखाई दे रहे हैं।

बड़े से जो है कांच का गेट वहां दिखाई दे रहा--

कुछ लोग जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और--